हमें कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।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

ए_टी_एम के बाहर हमें बहुत सारे व्हीकल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के बाहर हमें बहुत सारे फ्लावर दिखाई दे रहे हैं।

मोटरसाइकिल और एक्टिव खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

किए हुए दिखाई दे रहे हैं।